जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक बुद्ध जैनो का मंदिर हैं।

इसका नाम अजंता डेरी है यहाँ पर काफी सरे लोग दूध लेने आए हुए हैं तथा।

सड़क पर काफी सारे लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं।

रस्सी बांधी गई है यह बहुत ही प्यारी गाय लग रही है।

जैसा कि मै देख पा रही हूँ यहाँ पंचमेवे दुकान है यहाँ पर खा।

क़ेसर आदि सारी ही चीज़े वो भी शुद्ध यहाँ पर आराम से मिलती है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह काफी लंबी सड़क है तथा सड़क--

मिलते हैं यहां सर्दी और गर्मी के भी कपड़े मिलते हैं।

पुरुष डॉक्टर और एक महिला डॉक्टर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

तथा सड़क पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे पानी में गिरते है यहाँ एक महिला और पुरुष तथा कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है।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

एक पार्टी या शादी चल रही है यहाँ पर खाफी सारे लोग आए दिखाई दे रहे है या।